इसमें कुछ बेनर दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ फोटोज बने हुए है और कुछ बोतले दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक दूकान दिखाई दे रहा है जो वाईट कलर का है और ऑरेंज कलर का है।

हां पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और ब्लैक कलर का है।

इसमें कुछ गेट दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है और बहुत सारी लाइटे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

और येलो कलर की है और दो स्कूटी दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं।

इसमें बहोत सारी लकडिया रखी हुई दिखाई दे रही है जो मिट्टी कलर की है और क्रीम कलर की है।

ओर एक शटर दिखाई दे रहा है जो येल्लो कलर का है और एक लाइट दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

यहां पर मुझे एक आधा छत दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है।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

यहां पर मुझे एक रुम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो खड़ा है और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है।

जो वाइट कलर का है जिसमें बहुत सारे लाइटें दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

यहाँ पर मुझे एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

और इस लोहा का बना हुआ सीढ़ी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

जो वाईट कलर का है जिसमे बहोत सारी लाइटे दिखाई दे रही है जो वाईट कलर की है।

और कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं जो बंदूक चला रहे हैं।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

यहाँ पर मुझे बहोत सारे झोपडी वाले घर दिखाई दे रहे है जो हल्के मिटटी कलर के है।

जिसमें कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है।

जिसमें गद्दा दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है और कुछ पर्दे दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर के है।

यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा ट्रैक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है और ब्लैक कलर है।

इसमें एक मशीन दिखाई दे रही है जो ग्रे कलर की है और एक दिवार दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा ग्राउंड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे घास दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

और दो चक्के दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं और ग्रे कलर के हैं।

यहाँ पे मुझे एक सलून का छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और मिट्टी कलर का है।

इसमें बहुत सारे सामाने दिखाई दे रही है जो रखी हुई है।

यहाँ पे मुझे बहुत सारे फले दिखाई दे रही है जिनमे में से बहुत सारे नीबू दिखाई दे रहे है।

जो येलो कलर के हैं और ग्रीन कलर के हैं और बहोत सारे सेव दिखाई दे रहे हैं।

यो रेड कलर के है और बहोत सारे अंगूर दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है ।

और दो खिड़कियां दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की हैं।

और एक बुलेट दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है और ब्लैक कलर का हैं।

जिसमें दो चक्के दिखाई दे रहे है जो ब्लैक कलर के है।

यहाँ पर मुझे दो तोते दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर के है और येल्लो कलर के है और ग्रीन कलर के है।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

इसमें कुछ टेबल दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी कलर के है।

यहां पे मुझे बहोत सारे बस दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट कलर के है।

यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा कार दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और ब्लैक कलर का है।

इसमें कुछ गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं जो रेड कलर के हैं।

यहाँ पे मुझे एक मंदिर का रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

यहाँ पे मुझे एक सलून का बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है ।

और एक पर्दा दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और मिट्टी कलर का है और एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है।

यह ब्लैक कलर का है और दो कुर्सी दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।